इंसान यहाँ पे खड़ा है उसके पीछे एक घर है वो एक घर के ऊपर खड़ा है इधर उधर बहोत सारी --

यहाँ एक घर है और आसमान बहुत सुंदर है।

अच्छी पए पेंटिंग इधर-उधर होंगी शायद लाइट लगी हुई है उस मूर्ति के इधर-उधर पे।

इँसान कहीं जा रहा है फन मेला मुला लगा है।

बहुत अच्छा क्रिसमस डे पे है।

ये घर भी लग रहा है।